आस-पास यलो कलर कि बॉल्स है पिंक कलर के पिलर्स है यहाँ पर स्टेअर्स दिखाई गई है जिनकी रेड बाउंड्री है एक डोर दिख रहा है जिसका कलर ब्लैक है।

एण्ड इसका इसट्रियर ब्राउन एण्ड ग्रीन कलर का है यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रहे है यहाँ पर गिलास का डोर दिखाई दे रहा है कुछ बाइक्स खड़ी है।